फूलों की बारिश करी गई है राइट साइड साउंड सिस्टम और काफी लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये मंदिर लाइटों से सजा हुआ है और काफी सारी झंडियों से भी यहाँ बहुत भीड़ लगी है।

कुछ पेपर की कटिंग कर रहे हैं तो कोई पेपर चिपका रहे हैं वहीं कुछ बच्चे कलर करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे बहुत बड़े बड़े तबेले और बाल्टीया राखी हुई है यहाँ पे लोग सब्जी काटते हुए भी दिखाई दे रहे है।